यह एक बिल्डिंग लग रही है जिसमें बहुत सारे गर बने हुए हैं।

यहाँ पे दो पहिया खड़ी हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर लाइट लगी हुई है--

यहां पे एक बस है जिसमें काफी लोग च अंदर बैठे हुए हैं और एक चढ़ रहा है एक बाहर--

ऊपर भी हॉस्पिटल लिखा हुआ है और काफी लंबी हॉस्पिटल काफि ऊंचाई में बनी हुई--

ये ग्राउंड मे खड़ी हुई है पार्क में स्कूल के पार्क --

यह रोड है यहां से लंबी रोड जा रही है और पीछे पेड़ है खूब सारे पेड़ हैं रोड के इधर ही पेड़ है उधर भी पेड़ है।

यह नदी है और यहां पे पानी भरा हुआ है अगल बगल पेड़ है पत्थर है और बगल में ह हरा भरा--

ये यहा पे प्लान्ट के पोधे रखे हुए हे वहाल कुछ अन्दर कुछ बगल में रखे हुए हे।

साइकिल खड़ी हुई है स्कूटर भी खड़ी हुई है एक दो स्कूटी दिख रही है उपर बिल्डिंग बनी हुई है।

यहाँ पे कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ मशीनें भी हैं कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं कुछ मशीन से कुछ कर रहे हैं कुछ --

और मंदिर में झंडा लगा हुआ है अगल बगल पेड़ भी बहुत सारे हैं और पाइप बाहर पाइप भी पड़ा हुआ है।